एक सुंदर सा एक सुंदर सा बार कम रेस्टोरेंट में हैप्पी एंड पीस प्लेस में इतना सुंदर सा डेकोरेशन कर रखे हैं।

जैसे की फोटो फ्रेम्स इतना सुंदर सुंदर कुर्सियां है।

डेकोरेशन चल रहे हैं और रिसेप्शन में एक लड़का बैठे हुए हैं।

बहोत सुंदर सा एक क्लब दिख रहे है बार कम रेस्टोरेंट खाने के लिए फैसिलिटीज है बहोत सुंदर सुंदर सा चेयर रखे हुए हैं।

यह किसी घर की बैक डोर दिख रहे हैं बैक डोर के बैक साइड पर बहुत सारे पेड़ है पेड़--

एक प्लेन सी जगह पर शिव जी की मूर्ति बनी है।

ये और घर बिल्डिंग सब है।

एक एच_डी_एफ_सी बैंक है एच_डी_एफ_सी बैंक के बाहर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं अपना अपना काम चाह रहे हैं।

और सिक्योरिटी गार्ड उधर एंट्री लेने से पहले चेकिंग चल कर रहे हैं।

माल के बाहर है एक सुंदर सा उधर वेस्ट कोट बेचने वाले सेक्सन है और डेनिम जैकेटस --

बिल्डिंग के दो कलर में भाग है। एक येलो है एक ब्ल्यू कलर है।

बहुत ही सुंदर पहाड़ जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं।

ऊपर जाने को सीढ़ी स्टेप दिखाई दे रही--

मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं एक लड़के और एक छोटी बच्ची।

और उस लड़के ने इयरफोन लगे लगाए हुए हैं उसके गर्दन--

पिक्चर जो है ग्रीन कलर की टिने मारे हुए हैं और बहुत सुंदर स्टेडियम देख रहे हैं और बंबू कुछ बंबू कच्ची पूरा और बंबू के घर बने हुए दिख दिख रहे हैं।

और बहुत सारे छोटे छोटे बॉटल्स प्रोटीन के बोतल सब रखे हुए हैं।

एक बस जो है बन्देपुर टाइगर रिजर्व बस है।

वेटरनरी के एक कमरे के अंदर दो डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं।

और एक ने मास्क पहने हुए हैं एक ने नहीं पहने हैं।

एक बहुत ही खूबसूरत घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है।

पिंक कलर के सब सुंदर सुंदर सजाए हुए--

इसमें ये कपड़े सूखे हुए हैं वहां से एंट्री के लिए जाने का रास्ता दिख रहा है।